इन पर वाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है हॉल में एक ही लगे हुए हैं लाइटें लग रही हैं हॉल काफी सुंदर दिखाई --